एक घर है जो कि सफेद रंग का है।

कुछ प्लेट्स रखी हुई है इसके आस पास चेयर है।

बगल पे एक मीनार भी है।

यहां एक काउंटर बना हुआ है जो की स्पीच के लिए है।

पीछे टेंट लगा हुआ है।

यह दृश्य एक गाड़ी के शोरूम का है।

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इसके ऊपर कैरकेट लगा हुआ है जिसमें फेरी लाइट्स लगे हुए हैं।

और इसमें कुछ प्लांटस ऊपर टंगे हुए है।

नीचे भी कुछ प्लांट्स टंगे हुए हैं।

साईड साईड में कुछ शो प्लांट्स रखे हुए हैं और कुछ बड़े बड़े पौधे उगे हुएं हैं।

इसकी मशीन का भी रंग हरा सफेद है।

इसका गेट का रंग ग्रे है।

इसके ऊपर सीलिंग हैं जो की सफेद रंग की--

इसके ऊपर कुछ पोस्टर्स में गाड़ी और स्कूटी का चित्र बना हुआ है।

साइड में सीढी है जिसका रेलिंग स्टील का है।

यह दृश्य एक दुकान की हैं जहां पे एक पोस्टर लगा हुआ हैं उस पे लिखा हुआ हैं मायूर।

कुछ बंडल में भी कपड़े रखे हुए हैं।

यहां पे कुछ स्कूटियाँ लगी हुई है।

यहां पे एक टेबल रखा हुआ है जिसमें बहोत सारा प्लेट्स रखा हुआ है।

यहां पे एक बालकनी में बहुत सारा कपड़ा टंगा हुआ है।

पीछे कुछ काले रंग का भी डिजाइन बना हुआ है।

पीछे कुछ दुकान लगी हुई है जिसके ऊपर तिरपाल बंधा हुआ है और वहां कुछ व्यक्ति है।

उनके पीछे बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है।

बगल में एक सेटर है जो कि बंद है वो पीला रंग का--